ये कुछ पेंटिंग कर रखी है। कुछ बड़े--

इस मैदान में घास उग रखी है उसका आधा कलर भूरा है आधा--

कुछ आदमी और कुछ औरतें स्नान कर रही है और--

ये दरश्य एक भवन का है और भवन के ऊपर--

ये एक फूलों का बगीचा है।